यहाँ साइड पे मालिया बनी हुई हैं एक छोटा-सा बच्चा द--

और न उम अ ह इसके पीछे एक पार्क बनाया जा--

पिंक कलर का और ऑरेंज का पंखा ऊपर चालू हैं ।

म मेहेल बहुत बडा पुराना महल लग रहा हैं जो की--

झेडा लगा हुआ है बाहर के साथ जगाह--

ऊपर है उनका छत हैं।

उस साइड पे बोतल फ्री है फ्रिज मे हो रहे --

ऑप्शन तेराह उसने ग्रीन कलर कि जैकेट पहनी हैं और उपर--

पेपर पड़े हुए है पीछे उसके सोफा पड़ा हुआ है पीछे उसके गनपति पड़ा हुआ है।

अब बाहिर एक सिक्योरिटी गार्ड खरा है और ये एक मॉल है जहाँ पे लोग शॉपिंग कर रे है ।

यहाँ पे एक लगव हैं ।

टाइमिंग लगी हुई हैं नीचे टाइल लगी हुई हैं और रेड है।

अम्म मोटरसाइकिले भी खरी है और झंदा लगाया झंडे के उस पार भी खरीद रही है म --

ये फूलों वाली एक दुकान हैजहां पर मुखतलीफ़ किस्म के फूलों के हार लगे हुए हैं।

दरख्त मुकतलिब किसम के दरख्त है दरख्त होते है साइडो पे--

कुछ पीले हैं कुछ लाल हैं कुछ हम अ--

एक छोटी मूर्ति है एक बड़ी मूर्ति है छोटी मूर्ति ने सर में छूटा --

आगे जाके लोग बैठ हुए हैं और--

सब हैं जूते पड़े पड़े हुए हैं चप्पलें पड़े हुए --

पहला पिना हुआ सेट पे कार्यक्रया और एक खारी खराब हो गया है इसको सही कर रहे है ।

उसके ऊपर ईंटें पड़ी हुई हैं और पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और--

ये वो दीवाल के ऊपर कुछ मुक्ति किस्म का लिखा भी हुआ है।

यहां पे एक स्लाइड बनी हुई है जो एक ग्राउंड में और यहां पे बच्चा स्लाइड ले रहे हैं एक बच्चा --

मॉल से बना हुआ है माल के बाहर ये शिशे वाली इमारत है और ऊपर सेंट्रल कोर्ट है --

रजनाक है और मुकतलिब किस्‍म के ब्रॅण्ड्स है के--

वाइट कलर कि गाड़ी हैं दूसरी ग्रे कलर कि गाड़ी हैं औ--

ये कोई हॉल बना हुआ है जो जहां पे डेकोरेशन हुई है फूल--

और साइड पे गमले पड़े हुए हैं फूलों के और साइड --

जो है टेबल लगे हुए है दो उसके ऊपर किताबे ही किताबे पड़ी हुई है मुफ़्त की किस्म की किताबे है और सायद --

और नीचे परी हुइ है ।

दुर दुर सरक दरक्त हि दरक्त नजर आ रही है ।